पेट्रोल पंप में दोस्तों एक गाड़ी है बाइक है टू व्हीलर जिनके अंदर पेट्रोल भरा जा रहा है उसके आगे एक गाड़ी और खड़ी हुई है।

जिसके अंदर कॉफी पिलाई जा रही है कस्टमरस को--

यह दृश्य किसी जयपुर अ जिले के पुलिस थाना महेश नगर पुलिस थाना का है।

इस पेट्रोल पंप में गाड़ियां बहुत ही आती हैं जाती हैं पेट्रोल भर दिया दिया जाता है।

और उस व्यक्ति के एक हाथ में घड़ी दूसरे बाएं हाथ में एक कड़ा पहन रखा है उसने --

इस पहाड़ी स्थल के अंदर बहोत सारे लोग हैं पेड़ पौधे हैं व्यवस्था है किसी अच्छे माहौल की तस --

प्रथम दृष्टया किसी डॉक्टर के पर्सनल केबिन का ये दृश्य है।

दोस्तों ये जयपुर के स्थित स्टारबक्स का अपना एक आउटलेट है।

लोग बाग हैं यहां पर दिखाए हुए काफी यात्री दिख रहे हैं बैठने की व्यवस्था है एक टिकट घर दर्शाया गया है इसके अंदर।

जिसमें नीली बत्ती की यह गाड़ी खड़ी हुई है एक पुलिस कर्मचारी दिख रहा है काफी सारी भीड़ है यहां पर।

जोकि साफ प्रदर्शित हो रही है चॉकलेट आइसक्रीम यहां रखी हुई है बहोत ही बढ़िया --

दिखाया हुआ दृश्य किसी टापू का लग रहा है नदी के पास का वो क्षेत्र है।

सुंदर रूप में इसको बनाया गया है मंदिर को बाहर एक सब्जी का ठेला खड़ा हुआ है कार खड़ी हुई है।

काफी तरह की दवाइयां हमें मिल जाती हैं ये दवाइयां बहोत ही लाभदायक हैं।